दिखाई गई तस्वीर में साइन बोर्ड में बेकरस स्पेशल लिखा हुआ है।

दिखाए गए तस्वीर में एक सिरी जो काले रंग की है वो दी दुकान की तरफ जाती है।

खियाये चित्र में सुबह का समय हो रहा है।

इसमें दो चक्के वाले वाहन दिख रहे हैं।

दिखाए गए चित्र में सरकारी पुलिस आदेशक का कार्यालय दिखाया गया है।

विभिन्न तरह कागज की वस्तुएं दिख रही है साथ ही में कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं और--

दिखाए गए चित्र में एक रेत का मैदान दिख रहा है।

दिखाई गए तस्वीर में बहुत सारी बल्ब और लाइटो को देखा जा सकता है।

और कुछ दीवार में टंगी हुई तस्वीरें दिख रही है।